और बहुत सारी है यहाँ पे ये बर्तन जो है ।

और यहाँ पे ईख दिखाई दे रहा है छठी मईया पे कुछ --

और सामने में कुछ इ खम बड़ा सा चौड़ा सा खम्बा जैसा जिसपे इंडियन --

दिखाई दे रहा है ऊपर में आसमान है यहां पे जो चीज भी है वो --

यहां सामने में पार्च बोहत सारी घास दिखाई दे रहा और यहां पे कुछ --

और पीछे मे कुछ पेड़ का डाली इधर दिखाई दे रहे है जो टूटा हुआ है।

दे रहा है घर है जिसपे विंडोज भी दिखाई दे रही है यहाँ पे --